ऐसा लग रहा है और एक है पाइप जो इन पेड़ पौधों को पानी देता होगा।

ये एक रेस्ट्रोन सा लग रहा है इसमें अलग अलग रूम बने हुए हैं एक आदमी चेयर पे बैठा हुआ है फोन देख रहा है और --

यह एक गार्डन है इसके आसपास फूल भी लगे हुए हैं पेड़ पौधे लगे ही हुए हैं एक यह सटकी पड़ी हुई है।

पैंट किया हुआ है इस हॉस्पिटल के आगे एक बोर्ड भी ऊपर लगाया हुआ है आस पास बिल्डिंग भी है।

इस दुकान मे नाई कटिंग करता होगा इसके अंदर तीन चेयर लगी हुई है तीन आगे शीशे लगे हुए है एक ए_सी लगी हुई है इधर साइड --

यहाँ पे दो तीन कम्प्यूटर दिखाई दे रहे हैं कोई एक शॉप हैं जो कम्प्यूटर रिपेयरिंग कि भी हो सकती हैं या कम्प्यूटर बेचने की भी शॉप हो सकती है इधर साइड और भी --

एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है उस पे लाल झंडी लगी हुई है उधर साइड एक चेयर भी दिखाई दे रही है इस मंदिर के पास एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक है इसके आसपास बाईकें खड़ी हुई है और आदमी चल रहे हैं और उधर एक चेयर भी लगी हुई है एच_डी_एफ_सी बैंक --

पांच छै आदमी दिखाई दे रहे हैं दो तीन बैठे हुए हैं और पांच छै आदमी उधर साइड है इसके पीछे एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है उसे पे --